इसके ऊपर दो मंजिला इमारत है और शायद ये ऐतिहासिक इमारत कहेंगे इसको.

क्लीनिंग मटेरियल प्रोडक्ट दिख रहे हैं सामने.

एक फुटबाल का केम्प बना हुआ है।

दूर से बड़े-बड़े पौधे पेड़ नजर आ रहे हैं और.

सामने में ट्रक मोटर गाड़ियां सामने में.

का रिसॉर्ट सामने में नजर आ रहा है उसमें बीच में एक सिमिंग पूल बना हुआ है जो.

एक रेस्टोरेंट का आदेश से सामने में नजर आ रहा है.

और इसमें टेबल और चेयर लगे हुई हैं और लाइट से उसको सजाया गया है ग्रीन पत्तियों से भी सजाया गया --

अ ये तम्बू का दृश्य सामने में दिख रहा है दो बड़े बड़े तम्बू नजर आ रहा है।

दूर से शायद पानी के किनारे ये बना हुआ है और पहाड़ भी नजर.

ये मंदिर का दृश्य है जिसमें रथ के पहिए भी नजर आ रहे हैं.

बाइक्स अ स्कूटर लगानेका दो पहिया वाहन लगानेका स्टेण्ड नजर आ --

एक जू का दृश्य सामने में नजर आ रहा है जिसमें ऊंट दिख रही है सामने में.

ये कजू का दृश्य नजर आ रहा है सामने में यह सांप घर का दृश्य है इसमें एक सांप नाग है.

को रखा गया है और मिट्टी से बना हुआ है इसमें नाग फन फैलाए दिख रहा है.

एक मेला का द्रश्य सामने में नजर आ रहा है जिसमें सामने में एक तोरणद्वार बना हुआ है बड़ा सा।

जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए देख रहे हैं इसे.

हरे रंग की मकान भी नजर आ रही है कुछ.

एक स्कूल का दिशा सामने नजर आ रहा है ये स्कूल नीले कलर के रंग से रंगी हुई है.

रंग का चर्ज इसके बड़ा सा एक पेड़ लगा हुआ है इसमें.

ए नजर आ रहे है और इसको अच्छे से --

हरे भरे मैदान का दृश्य --

एक रोड का दृश्य रोड पूरी खाली है उसके किनारे किनारे हरे भरे खास.

तो ये उजले कलर का मॉल है जिसके किनारे से.

सामने में एक पीला कलर का बोर्ड है जिसमें.